पानी पी जो ब्लू कलर के आ रहा है और साइड में बाउंड्री है उसके मतलब उसके स्टेप्स है एंड वॉल्स है उसके साइड में बहुत सारा घर है एंड पेड़ है।

कोने मे एक घर है एण्ड साइड में बहुत सारा पेड़-पौधा भी है एण्ड उसके साइड मे एक दो बेंच भी है।

ये एक बस स्टॉप की फोटो है जहाँ पे बहोत सारे ब अ बस हैं।

ये एक बड़ी इमारत है जहां-जो मतलब व्हाइट कलर की वॉलस है उसमे एण्ड ये तीन महोले के बिल्डिंग है।

बस स्टॉप के फोटो हैं जहाँ पे दो बस रखे गए हैं और उसके साइड में एक छोटे बस भी हैं ।

ये एक वेटिंग रूम की फोटो है इसमें बहुत सारे चेयर रखे गए हैं एंड कोई-कोई लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं एंड उसके सामने एक काउंटर है।

एंड ये दो महल्ले की बिल्डिंग है और इसके साइड में एक और बिल्डिंग भी हैं।

ये एक बिल्डिंग की फोटो है जो कि तीन फ्लोर का है एंड जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में एक सीढ़ी है।